यहां पर मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।

यहां पर मुझे एक लंबा रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमें कुछ लाइने बनी हुई है जो वाइट कलर की है।

और कुछ ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं जो ब्ल्यू कलर के हैं और ब्लैक कलर के हैं।

और कुछ लाइटे दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के हैं और वाइट कलर के हैं।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है।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

इसमें बहोत सारे घास दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के है और ग्रीन कलर के हैं और मिट्टी कलर के हैं।

और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो खड़े है और एक सामने में बाइक दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और ग्रे कलर का है।

और एक कार दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो गिन कलर के है।